यहाँ पर बॉक्स छोटे-छोटे बॉक्स पड़े हैं ऑयल भी पड़ा हुआ है यह एक --

यहाँ पर दो-तीन पिक-अप गाड़िया दिखाई दे रही है।

एक आदमी उनमे से काले कलर का कोट पैंट पहने हुए है और दूसरा ग्रे कलर का कोट पैंट पहने हुए है।

एक व्हाइट कलर का बनियान पहने हुए हैं और दूसरा चेक की शर्ट पहने हुए हैं ।

इस फोटो मे एक लड़का दिखाई दे रहा है वह लड़का लाल रंग की पेंट पीले रंग की शर्ट पहने हुए हुई ।

पेंटिंग कर रहे है रंग-बिरंगे पेपर पर पेंटिंग कर रहे है उन--